यह तस्वीर एक उद्ययान की है। उद्ययान में पीले रंग के गेंदे लगे हैं।

ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की है इसमें ऊपर जाने का रास्ता दर्शाया गया है।

येह तस्वीर एक पहाड़ी की है | पहाड़ी बोहुत ऊँची है।